चित्र में व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है।

इस दुकान की छत पर सफेद रंग की लाइट लगी हुई है।

और नीचे का फ्लोर एक दम सफेद है।

यह एक चित्र है जो कि कुंग फू क्लास का है।

और बहुत सा सामान इस दुकान के अंदर मौजूद है।

यह एक चित्र है जो की बोतल की दुकान का है।

यह एक चित्र है जो कि किसी मंदिर का लग रहा है।

एक बस दो बस हरे रंग की है और एक बस नारंगी रंग की है।

यह एक चित्र है जो किसी घर का लग रहा है।

अऊर ऊपर सफेद लाइट जल रही है छत पर।

यह चित्र जो कि किसी घर का है।

चित्र में सामने एक तिरपाल लगा हुआ है।